यह एक फोटो कैमरा है यहाँ पे एक आदमी तस्वीर किसी की ले रहा है और यहाँ पे एक स्कूटी भी दिखाई पड़ रही है और यहाँ पे ईंट भी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ी हुईं --

यहाँ पे पड़ोस में बिल्डिंग भी बोहोत ज्यादा सुंदर बनी हुई है यहाँ पे पेड़ भी दिखाई पढ़ रहे हैं कुछ कुछ घरों पे टंकी भी रखी हुई हैं।

एक नाव है | नाव पे दो लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और इन्होंने सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई है और एक जींस पहना हुआ है एक काली जींस एक नीली जिंस |--

और नीली जींस पहनी हुई है और वॉच भी बंधी हुई है और चश्मा भी लगाया हुआ है। नहर देखने में बोहोत सुंदर है और पेन्ट भी बहोत --

एक ये गेस्ट हाउस है | यहाँ पर बलून्स रेड कलर के बहुत ज्यादा लगाए गएँ है ऊपर तीन चार चीज़ें गोल गोल बहुत अच्छी अच्छी लगी लगी हुई है घड़ी वगैरह लगी हुई हैं ।

और यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है टोपी पेहने वो फोटो किन निकलवा रहा है। नीचे भी बलून्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं।

और नीचे बहोत अच्छी सजावट भी है और ताल भी हैं यहाॅं पे एक आदमी फ़ोटो भी निकलवा रहा है अपनी और एक आदमी बह अंदर से भी आ रहा है अंदर कुर्सी भी बोहोत सुंदर पड़ी पड़ी --

यहाँ पे बहोत अच्छी लग रही है | यहाँ पे फर्श वगैरा बोहोत ज्यादा पड़ी हुई दिखाई पड़ रही है।